वॉल पे लगाया हुआ है और एक लाइट दिखाई दे रही है और बहोत सारे लाइट्स लगी हुई है।

यहां मुझे एक अ अ नर्सरी टाइप दिखाई रही है जहां छोटे छोटे प्लाट रखे हैं।

और पीछे दुकान में अ बहोत सारे सामान रखे हुए यहां पे एक काटा दिखाई दे रहा है यल्लो कलर का--

ब्राउन कलर के जो हैं और साइड में व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है और ग्रिल दिखाई दे रहा है ।

और व्हाईट कलर का बिल्डिंग अं अ टेबल्स लगे हैं और व्हाईट कलर की अ दीवार है ऊपर सीलिंग भी व्हाईट कलर के है वहां खिड़की है।